और आ साइड में जो रूम रूम भी है खिड़की दरवाज़ा है और जो स्विमिंग पूल है वो पानी नीले रंग का दिख रहा है।

और पानी के बीच में एक दीवार के जैसा कुछ बना दिए हैं।

स्लाइडिंग है जो बच्चे चढ़ के नीचे फिर स्लाइड करके उतर जाते हैं।

और मेडिसिन दुकान नहीं है स्टोरेज किराना दुकान है और वहीं पे ठंडा मिल रहा है स्प्राइट माजा ।

सब खिलौना है कुछ खाने की चीज भी रखे हुए है और अह उनके लिए हिसाब करने के लिए कॉपी भी है पेन भी है।

ठीक कर कर रहें हैं और अह गैरेज का रूम है।

और वो घोड़ा है घोड़ा से बैठ के झूला झूलते हैं बच्चों--

पुल के कुछ बनाने के लिए और एक मदर भी है वहीं पे खड़े हुए हैं।

यें फेडरल बैंक हैं नीचे एटीएम बूथ है और फेडरल बैंक ब्लू कलर का पोस्टर दिया हुआ हैं।

बहोत सारा घर भी दिख रहा है जो लोग रेहते हैं।